ओ सामने एक लाल और सफेद कलर की फुबरो से एक स्टेज सजी हुई है और एक सामने एक बैलून लगा हुआ है केक रखा हुआ हैं।

एक सड़क पे कुछ लोग चल रहे हे एक सफेद एक सफेद कलर के कपड़े पहने हुवे एक लड़का एक थैला लि--

एक आदमी है जिसने एक ब्लू कलर का पहन हुआ है जो की ब्लैक कलर की एक कुरसी पर बैठा हुआ है बड़े से--

निचे एक बड़ी सा एक हॉल है जिसमे चारो तरफ से फर्नीचर लगा हुआ है और लाल कलर लाइटिंग जली हुई है।

बगल से कुछ पानी डला हुआ है सामने व्हाइट शर्ट और ग्रे कलर का पेन्ट पहने नीचे जूते पहने और नीचे धूप है ऊपर खुला आसमान है एक लड़का खड़ा हुआ है।

नीचे राक्षस बना हुआ है चारों तरफ से कुछ लोग खड़े हुए है ऊपर आसमान मे चन्दा उग रहा है ।

नीचे कुछ कांच के कप रखे हुए हैं कुछ कत्तियां हैं नीचे एक मेट बिछी हुयी है और वह की नीले कलर की है और नीचे से कुछ लाइटिंग आ रखी है और नीचे कुछ कांच के गलास --

पीछे रेड और गोल्डन की ड्रेस में जो की एक किताब पढ़ रहे है सामने एक कुर्सी है जिस पर जेफीनर लिखा हुआ है कुछ नीचे तार डले हुए।

और एक सामने दिवार पर एसी सैलून और एसी सैलून लिखा हुआ है नीचे कुछ रेड कलर की कुर्सियां है और कुछ फुलो से सज्जी हुई दुकान है जिसमे नीचे नीले हरे ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है।

एक सैलून है जो की एक सफेद कलर का है और ऊपर से कुछ लाइटिंग हो रखी है बगल से एक वॉसपेश लगा हुआ है।